एक टेबल के ऊपर फूल और नमक सॉस रखा हुआ है उसके चारों और चेयर बिछी हुई है।

यह दृश्य एक दरवाजा का है जो अभी बन रहा है दरवाजे में डिजाइन बनी हुई है ।

बहुत सारे फोन लगी हुई है और यहां एक काउंटर पे एक आदमी हाथ रख कर खड़ा--

उसके पीछे बसे लगी हुई है और साइड में एक बिल्डिंग है जोकि नीले रंग की है।

इसके पीछे तालाब है जिसमें आधा पानी सूखा--

और साइड में बहोत सारे तीर वाले निशान के बोर्ड लगे हुए हैं।

और दो जिराफ़ खड़े हुए हैं और यहां पे एक लोमड़ी--

के बगल मे एक छोटा नीला रंग का भी टंकी है।

और यहां खिड़की है जिसपे पर्दा लगा हुआ है पर्दा में कुछ कुछ पोस्टर बना हुआ है और दीवाल पे कुछ लिखा हुआ --

और दीवार के बीच में एक पोस्टर लगा हुआ है साइड में एक सोफा भी लगा--

सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ है उसके बगल में दो मिनरल वॉटर के बोतल रखें हुए हैं उसके पीछे भी बहुत सारे लोग बैठें हुएं हैं।

यह दृश्य एक टॉय शॉप का है जहां पर बहुत सारे खिलौने हैं।

इस दृश्य में एक तालाब है जिसके बगल में एक कुआं है।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

लाब के उस साइड बहुत सारे छोटे छोटे घर है जो की पीले सफेद और गुलाबी रंग का है।

और एक व्यक्ति दूसरी तरफ जा रहा है जो कि मैरून रंग का कुर्ता पहना हुआ है।

यह दृश्य में बहोत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक मकान है जो कि सफेद रंग का है।

के पीछे कुछ शो प्लांट्स लगी हुई है और उसके रोड बना हुआ है रोड के उस पार जाते ही पेड़ लगा हुआ--

कुछ शो प्लांट्स है और साइड में रेलिंग लगी हुई है जिसका रंग सफेद रंग का है।